यह फोटो खेल-कूद के मैदान की है जहाँ एक व्यक्ति के पैर में मसल स्ट्रेन हो जाने की वजह से एक ट्रेनर उसके पैर को ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है।

विद्यार्थी अपने कंधे पे बेग लेके हाथो में किताब पढता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पार्क में फव्वारें लगाए गए हैं फव्वारें कुछ बड़े फव्वारें है कुछ छोटे फव्वारें हैं।

इस फोटो में एक डॉक्टर अपने मरीज के ऊपर एक्यूप्रेशर थेरेपी करता हुआ दिखी दे रहा है एक्यूप्रेशर थेरेपी अक्सर हम अपने शरीर में दर्द के राहतो के लिए करते है।

एक व्यक्ति खड़ा है जो उसके हाथ में भी बैट है यह स्टेडियम काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।

यह फोटो किसी स्कूल की है जहाँ यहां पे स्पोर्ट कराया जा रहा है। यहां छोटे - छोटे बच्चे के राउण्ड में हो।

इस बिल्डिंग के बगल मे दो बस खड़ी है और दो व्यक्ति साइकिल से जाते हुए दिखाई दे रहे है इसके आस-पास ढेर सारे बड़े-बड़े पेड़ है।

यह फोटो स्टेज की है जहाँ ढेर सारी लड़कियां नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है।

यह फोटो सड़क पे क्लिक की है जहां एक कार खड़ी है कार के आसपास भीड़ है सारी कार या मोटर साइकिल खड़ी है।